मैं यह देख रहा हूं कि--

पानी के साइड में खड़े हैं और एक लड़की स्वेटर पहने आगे खड़ी हुई है।

कुछ खिलौनो के रूप में फुटबाल वॉलीबाल और एक कार रखी हुई है।

कांच की बिल्डिंग बनी हुई है और इसके बीच में एक खिड़की रखी हुई है।

वहां पर फोटू खिंचवा रहे है।